यहाँ पे बहोत सारे प्लेट्स नज़र आ रहे है जिनको सोलर पैनल कहा जा--

ये जगह कोई गली नजर आ रही है। जहाँ पे मछली बिक रही है। एक बड़ा सा टेंक है। वहाँ मछलियां नजर आ रही है।

ये जगह बिष्णु पथ के अंदर का जगह है जहाँ पे कुछ ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे है हवन हो रहा है मंदिरे भी है।

जहां पे अभी बहोत भीड़ है यहां पे कुछ लोग अपने काम कर रहे है बोहोत सारी गाड़िया है और बहोत सारे पंडित नजर आ रहे है वो लोग ऊंट पे बैठ के अपने काम के लिए जा रहे है।

कपड़ों को रंगाई करने के काम किए जाती है और अभी वही काम हो रहा है।